मुझे इस तस्वीर में बिल्डिंग देखने को मिल रही है।

मुझे इस तस्वीर में बैंक देखने को मिल रहे हैं जहां सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं।

ढेर सारा सीलिंग भी देखने को मिल रही है।

ढेर सारा पेड़ पौधा है।

केवल उसके सामने पुश लिखा हुआ हैं गेट में।

यहां मुझे सफेद बिल्डिंग दिख रही है और यहां--

और ढेर सारा डेकोरेशन करके लाइट भी लगा हुआ है।

उसके सामने लाल रंग के टंकी ह--

तस्वीर में टॉय शॉप नजर आ रहा है जहां ढेर सारा बेबी डॉल्स --

दृश्य है बच्चों के खेलने की चीज--

इस मंदिर में बुद्ध भगवान की मूर्ति है।

बैठने के लिए कांच से बना हुआ ढेर सारा शीशे वहां पे आदमी लोग बैठ रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में रास्ते के किनारे एक बिल्डिंग देखने को मिल रहा है।

यहाँ एक लड़के फोन देख रहे हैं और यहां में चेयर्स लोग भी नजर आ रहे हैं औ--

के सामने ढेर सारा मनुष्य भी है।

ढेर सारा कप भी देखने को मिल रही है।